यहाँ पर आदमी सब मम्म काम में लगा हुआ है। जो की ठीक कर रहा है। ठोक रहा है जो भी कर --